यहां पर जिम का दृश्य दिख रहा है।

दीवाल व्हाइट कलर का है स्विच लगाया हुआ है वाइट कलर का।

यहां पर घर का दृश्य दिख रहा है।

दुकान में काउंटर बनाया हुआ है और नीचे में कुछ अलग अलग बाल्टियाँ रखी हुई हैं।

रंग बिरंगे लाइट जल रही हैं ब्लू कलर का व्हाईट कलर का।

यहां पर घर का दृश्य दिख रहा है।